यह एक हॉल है हॉल का जो स्टेज है वो बोहोत ही प्यारा सजाया गया है। उसमे एक टेबल रखा हुआ है जो लाल कलर का है।

और चश्मा लगाया है। पीछे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिख रहे हैं और ईंटे की दीवाल दिख --

दो बिस्किट की बरनी रखी हुई है। चार पानी के बोतल रखे हुए है और एक ग्लास रखा हुआ है।

यह एक छोटा सा होटल है होटल में अ बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें आइसक्रीम छपी हुई हैं।

यहाँ पर एक बुक्स स्टेशनरी सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। कैलेंडर टांगे हुए हैं।

यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है ब्यूटी पार्लर का गेट अभी खुला हुआ है और एक बाहर पोस्टर लगा हुआ है जिसपे डिस्काउंट वगैरह लिखे हुए हैं। एक हरे कलर का डब्बा दिख रहा है।